और माला-उला सब चढ़ा हुआ है वगैरा लगा हुआ है केला वगैरा सब दिख रहा है।

यह एक पार्क का है एक बरगद का पेड़ है एक आदमी बैठा हुआ है फ़ोन चला रहा है रेड कलर का पिलर दिया हुआ है एक डस्टबिन भी लगा हुआ है उसके पीछे एक भाईट मकान टाइप का भी बना हुआ है कल वगैरा भी लगा हुआ है।

यूनिवर्सल डिजिटल नेटवर्क गेट नंबर दो का है ग्रीन कलर का गेट है गेट बंद है दो आदमी खड़ा है बाकी दो-तीन बच्चा है वो --

मेकअप ब्यूटी सैलून है ये पीछे बैनर लगा हुआ है आँख के आगे फ्लावर का पोर्ट रखा हुआ है एक ड्रेसिंग लगा हुआ है साइड में।

ये एक स्टडियम का है बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहा है। साइड में एक पिलर बना हुआ है उसमे बैलन लगा हुआ है। ब्लू और वाइट कलर में बहुत सारे लोग है हसी मजाक कर रहा --